साइड में बहुत से गट्टे भी रखे हुए हैं।

यह बहुत सारी बोरी में शकरकंद है।

ग्राउंड के पीछे एक स्कूल भी बना हुआ है।

जिसके ऊपर लाइट भी लगी हुई दुकान के ऊपर तार भी लग रहे हैं और साइड पे खिड़की भी लगी हुई है।

और ऊपर लाइट लगी हुई है और एक व्यक्ति बाल काट रहा है।

यह एक सुंदर सत्संग भवन है।

बहुत सुन्दर दुकान है जिसके ऊपर लाइट भी लगी हुई हैं और ऊपर पंखे भी लगे हुए है।

और सामने की तरफ एक बोतल भी रखी हुई है।

और साइड में एक बाल्टी भी रखी हुई है और नीचे की तरफ अखबार भी पड़े हुए हैं।

और इधरली साइड में बहुत से गत्ते किताब पड़ी हुई है।

यह बहुत सुंदर कछुआ है।

यह एक बहुत सुंदर कंपनी है।

कार की साइड में एक बुलट भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर चौक है।

सामने एक कुर्सी रखी हुई है जिसके ऊपर एक बोतल भी रखी हुई है।

और नीचे की साइड पे ईंट भी बिछी हुई है।

और योगा सेंटर पर सफेद रंग का पेंट भी हो रहा है।

यह बहुत सुंदर डॉक्टर की दुकान है।

और मेज के ऊपर बहुत सी कॉपी भी रखी हुई है और नीचे की साइड पर बहुत सुंदर टाइल लगी हुई--

इस दुकान में एक आदमी खाना बना रहा है।

और बहोत से सुंदर परदे लगे हुए हैं।

और सामने की तरफ लाल रंग का पर्दा भी लगा हुआ है सामने बहुत सी कार भी खड़ी हुई है।

और कुर्सी भी रखी हुई है और एक काउंटर भी रखा हुआ है।

कल सफेद रंग की लग रही है।

और सफेद रंग के झंडे भी लग रहे है सामने बहुत से पेड़ दिख रहे है।